पेड़ लगे हुए है यहाँ पर एक लाल कलर का बड़ा सा गेट भी है यहाँ पर आसमान दिखाई दे रहा है और यहाँ पर दाये-बाये साइड गेट के पेड़ लगे हुए दिखाई दे रहे है और यहाँ--

आसमान दिखाई दे रहा है पेड़ दिखाई दे रहा है पेड़ो मे कई अ अ कम से कम पत्ती ही दिखाई दे रही है और यहाँ पर रिक्शा सभी दिखाई दे रहे है।

--और यहाँ पर फुल्की दिखाई दे रही है साइड मे रखी हुई बड़ा सा पेड़ दिखाई दे रहा है आसमान दिखाई दे रहा है यहाँ पर डस्ट्बिन भी रखा हुआ दिखाई दे--